यहाँ पे एक तालाब दिखाई दे रहा है और उसमे नाव भी दिखाई दे रहे है और घास वास दिखाई दे रहा है दूर दूर तक पे--

यहाँ पे एक बैनर पंजाब पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है रेड और येलो में हैं शटर गेट बंद है और खिड़कियाँ दिखाई दे रही है।